एगो प्लेट में ओदर करके मंगावे गईल बा डोसा एगो

एक बादाम के चटनी बा एगो डोसा बा बहुत अच्छा स्वादिष्ट बा ई देखे में बहुत अच्छा लागता।

ए तीनगो विकेट लगा गई बाएकदम वाईट कलर से बना बना के एकदम खेले खातिर तैयार कईले बा क्रिकेट ।

एगो क्रिकेट के मैदान बा ई बहुत अच्छा बा ई बहुत बड़िया बा।

सोफा कराईगल बा पोलिश करके रखलवा और एगो दुगो सोफा बा एगो में पलाई लगतवा

अ ई कॉफी बहुत अच्छा ग्लास में कोफ़ी निकाल के खलता।

यह एगो मेडम बाड़ी यह छोटी बच्ची के डांसर के परुस्कार दे तारी ये लड़की खड़ा बा ई सब।

क्रीम कलर से रंग्लवा ई ओर

दो डांसर बाड़ी ई डांस करेला हाई पूरा फुल वुल पहनके माला वाला

वोर लगाता ई बहुत बड़का देवता के मंदिर है पूरा सोना के बहुत बड़ा मंदिर बा ई।